ये श्री लेदर का शू शू सेंटर है आप --

जो और भी सब चूस --

नट उट वगैरा है और बहुत ही अच्छा है।

साफ रखिये और स्वछता पाइये।

बीमारी नहीं होगा और स्‍वच्‍छ रहिएगा।

और फिर लीजिए और रहिए इंजॉय कीजिए।

जानकी मंदिर का दर्शन कीजिए व्‍यू लीजिए म्‍यूजियम दे --

यहाँ अच्छा-अच्‍छा फ्रूट फ्रूट मिलता है फ्रूट मिलता है।

हमारे शहर वि में विकास हो सके वृद्धि हो सके।

और भी बहुत कुछ हो सके जो देश-विदेश के लोग आकर देखे।

पूजा पाठ करिये घूमने आईये दर्शन कीजिए।